आस-पास जू और भी दुकाने दिखाई रही है जिसपे बोर्ड लगे हुए है पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली के तार बंधे हुए है नीचे हरयाली भी दिखाई दे रही है।

एक मस्जिद दिखाइ दे रही है मस्जिद सफेद रंग की है जिसका घुमट दिखाई दे रहा है चोटी दिखाई दे रही है छोटी-छोटी मिनरे खड़ी हुई है इस मस्जिद पे आ-आकृति बनी हुई है।

यहां पर एक दीवार दिखाई दे रही हैं। जो की सफेद रंग कि हैं। जिसपे ग्रे कलर से आकृति बनी हुई हैं। सामने की तरफ एक दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।

शो रूम का द्रश्य है यह कपड़ों का शोरूम है यहा पर एक हैंगर मे कतार मे बहोत सारे कोर्ट टंगे हुई है रेक रखी हुई है रेको मे समान लगे हुए है।

यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ते मैं मिटी ईंटो के टीले लगे हुऐ है। बड़े बड़े ब वृक्ष दिखाई दे रहै है। कुछ सुखे वृक्ष दिखाई दे रहै है। कुछ हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहै है। झाड़ियां दिखाई दे रही है।

यह एक जंगल है जिसमें घनी-घनी झाड़ियां दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ों की टहनियों बहुत दूर-दूर तक पैलीं हुई हैं।

काले अंगूर है हरे अंगूर है पीछे की तरफ देखने पर दो और लोग खड़े है जो जिसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है एक ने अ-आसमानी कलर की शर्ट पहैन रखी है पीछे लाल अ कलर का कपड़ा लगा हुआ है एक आदमी बेच रहा है।

यहाँ पे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक लोरी दिखाई दे रही है एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो कि काले रंग का है पीछे से एक सड़क आ रही है।

यहा पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते चिड़िया दिखाई दे रही है एक महेल बना हुआ है गुंबज दिखाई दे रहा है गुंबज पे चोटी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है जाड़िया दिखाई दे रही है।